ये फोटो देख के एक रेस्टोरेंट जैसे दिख रहा है।

और उसका आगे एक पेड़ है और बहुत लोग दिन का अंदर बैठ के हैं।

जो टेबल का ऊपर में बहुत सारा सामान है।

और लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक लड़की ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है।

और बहोत सारा चेयर भी है और रूम का कलर लाइट पिंक है।

ये फोटो में मुझे एक घर दिख रहा है जो है एलो कलर का है।

और शिप से जाने के लिए एक रास्ता भी बनाके हैं और शिप को नदी किनारो में--

व्हाइट कलर का टावल रखा गया है और दोनों ही सोफा में पिलो भी है।

बाइसाइकिल बच्चों लोग का भी अलग से रखा गया है जो रेड कलर में भी है येलो कलर में है।

और उसका बगल में बहोत सारा लोहा और सीसा है और ऊपर में भी बहोत लोहा रखे हैं।

और पीछे में एक वॉल क्लॉक भी देख रहा है।